पोल है और गाछ है और घर है ता का घर है।

और यहाँ हरा-भरा है और कुछ गाछ भी है । गाछ और बड़ा सा फील्ड है और बोहोत सारे आदमी है ।

यहां चार मोटर साइकिल लगा हुआ है दू गो साइकिल लगा हुआ है एक घर है और दस बीस आदमी है और उधर दस बीस आदमी पांच मोटरसाइकिल है।